दो गाय कड़ी है एक छोटी गाय और एक बड़ी गाय कड़ी है जिस के कांड में कुछ पिले रंग की कुछ--

एक टेबल के ऊपर मूर्ति

समाने एक साइड से बड़ा सा एक पत्थर रखा हुआ है छोटी सी दरवाजा है ये पत्थर का बनाया गया है जो भूरे रंग के पत्थर है|

और गुम्बज बनउया गया हिअ उसमे और बल में नमंडी र में बहुत सारी मुर्तिया बनाई गईहै कुछ कव्होटे और अलग अलग बनाया गीता हिअ--

जो खुटे में बंध गाये वो भूरे रंग का है चगरो तरफ पेड़ पौधे लगाए गए है जो हरे रंग की पति है|

एक छोटा सा गार्डन है जो हरे रंग की पत्तिया है और ये-ये जिराफ के चित्र बनाये गए है अब भी अगल बगल भी कुछ हरे बड़े और लाल रंग के काले रंग के पत्ते है|

बगल मे काले रंग का डिब्बा रखा हुआ है सफ़ेद और नीले रंग के आसमान है कुछ पेड़ लगाया गया जो हरे रंग हुआ है|